स्कूल के आगे ग्राउंड बना हुआ है जो हरा है इसके अंदर घास उगी हुई है।

वो फ्रिज है जो की अलग अलग क्वालिटी के है इधर पेकेट पड़े है और भी--

इस चित्र में एक बहोत ही बड़ा घर बना हुआ है जोकि बहोत ही सुंदर है।